कल्टीवेटर भी रखा हुआ है। रोटोवेटा भी रखा हुआ है। चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी हैं और इस तस्वीर बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।

जैसा की आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। सामने बहुत सारे पशु हैं और एक अन्दर है।

गुब्बारा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग भी चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी हरे रंग का घास भी है कुछ लाल कलर के फूल भी लगे हुए हैं।

खम्बे पे लाइट भी लगा हुआ है। बहोत सारी गाड़ी भी खड़ी हुई है। गाड़ी पर लोग भी सवार और तस्वीर देखने में बहोत ही अच्छी --

भगवान् की मूर्तियाँ है और भी बहुत सारी मूर्ति है जो की देखने में बहुत ही अच्छी दिखाई दे रहे हैं ।